ये कुछ लड़के सेल्फी लेते हुए दिख रहे है ये पीछे कुछ लड़के खड़े हुए है ये।

सत्वा एजुकेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये। सत्वा एजुकेशन लिख रहा है ।

पास गाड़ी खड़ीं हुई है बाहर गेट दिख रहे है दो गेट के अंदर --

चेयर टेबल दिखाई दे रही हैं । एक साइकिल खड़ीं हुई है बा--

ये सामने बड़ी से पहाड़ियां दिखाई दे रही है हरी-भरी पहाड़ियां है ये।

ये हमें सरकारी भवन दिख रहा है सरकारी बिल्डिंग है ये |

प्लेटफॉर्म दिख रहा है पेड़ो लगे हुए है खम्बा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

पाइप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे खेत दिख रहा है।

एक काउंटर पर सामान रखा हुआ है । बुक्स रखी हुई हैं । एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है ।

नाव नाव खड़ी हुई है किनारे पर बहुत सी एक नदी के अंदर बोट दिख रही है।

व्हाइट कलर का केक है सुंदर-सा डेकोरेशन हो रहा है केक का।

एक ऑटो पार्ट्स की दुकान दिख रही है ऑटो पार्ट्स की दुकान है ये।

एंड सामने सामान रखा हुआ है । ये ऑइल की एक कैन रखी हुई है ।